और कितने सारे वहां पे पंछी दिख रहे हैं।

और कितने सारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है इस पानी का कलर ब्लू कलर का है।